ये हमें चिकन बिरयानी लग रहा प्लेट में रखे हुआ ।

ये मम्मी डैडी आ_आ वस्त्रालय है | काफी सारे वस्त्र रखे हुए हैं | बहुत आ बढ़िया बढ़िया कपड़ा है बहुत ज्यादा अच्छा है।